और पेड़ वगैरा लगा रखे हैं यहां पे बहुत सारे --

मटकी वगैरा चरी वगैरा लटकी हुई दिखाई दे रही है यहां पे पीछे के साइड दो तितलियां बन रखी है।

जिसमें तरह के सामान वगैरह कुछ कुरकुरे बिस्कुट की दुकान उं कुरकुरे बिस्कुट भी है

और इ शटर लगा रखा है इधर पास में एक गेट भी है और यहां पे कुछ सामान भी लटके हुए हैं।

और साइकिल के टायर वगैरा से सजावट कर रखी है यहां पे कुर्सियां भी बहोत है और यहां पे --

जिसमें लो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं एक खंभा भी है इसमें और इसमें एक घूमने के लिए रोड भी मना रखी है।

इसके बाहर कार वगैरह दिख रही है आसपास में पेड़ वगैरह है बहोत सारे खंबे वगैरह लग रहे --

और एक इसमें छतरी वगैरह भी लगा रखी है ल उल्टी लटका रखी इसमें।

और ये कुछ आदमी नजर आ रहे हैं कुछ आस-पास में पेड़-पौधे भी लग रखे हैं और बिल्डिंग वगैरह भी है।

और यहां पे एक पानी का जो टंकी रखी है ऊपर टंकी भी है।